ऊपर चादर का शेड डला है।

नीचे भी खिड़कियां हैं और एक बाइक खड़ी है.

दो आदमी हैं जिनके चेहरे छुपे हैं।

अ ड्राई क्लीनर्स जेंटल लिखा है बोर्ड पर--

हमे लोग भी दिखाई दे रहे है बैठे हुए।

एक सोफा रखा है जिस पर दूल्हा और दो लोग बैठे हैं।

एक लड़का बैठा हुआ है और चेहरा उसका छुपा है।

तस्वीर में हमें मालाएं रखी दिख रही हैं।

इस तस्वीर में हमें जमीन में टाइल्स दिखाई दे रहे हैं काले रंग के।

एक महिला खड़ी है एक बैठी है।

इस तस्वीर में हमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जमीन में टाइल्स हैं।

काले सफेद और हमें लाल रंग के मुर्गे दिखाई दे रहे हैं।

उस पर द सिटी कैफे लिखा है।

पत्थर एक पास में रखा है आदमी के--

इस तस्वीर में एक आदमी बैठा है।

हरे-हरे पेड़ हमें लगे दिखाई दे रहे हैं।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

तस्वीर में पीपल्स मॉल लिखा है।

हमें नीचे आदमी दिख रहे हैं।

नीचे जमीन में टाइल्स लगे हैं।

एक सामने लाल गुंबद वाली इमारत बनी है।

इस तस्वीर में आदमी दिख रहे हैं।

और सामने एक बड़ी सी देवी की मूर्ति है।

और सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं।

और ऊपर एक गोल गुंबद है।

और लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक आदमी बैठा दिखाई दे रहा है।

खिड़कियाँ बनी हुई हैं बिल्डिंग में।

और हमें पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में एक काली सड़क दिख रही है।

दो आदमी बनियान सफेद पहने बैठे हैं।